सामने कुछ औरते लोग है जो की खुर्सियों मैं बैठी हुई है और कुछ लोग खड़े है कुछ आदमी लोग भी है सामने एक इस्टेज बना हुआ है जिसमे कुछ खड़े हुए है।

फेक्टरी का छत टीने से बना हुआ है और बहोत शारी लाइट लगी हुई हैं जो की शफ़ेद कलर की जल रही हैं शामने कुछ लोग है जो की फेक्टरी में काम कर रहैं हैं।

नीचे बोहोत सारी कुरसिया है जिसमे पीला कलर का कपड़ा रखा है उसके सामने उन का रेट लिखा हुआ है जिसमे बीस लिखा हुआ है और चारों तरफ कुछ आदमी लोग है और कुछ औरतै है जो की सामन खरीद रहे है।

दूर दूर मे कुछ झूले लगे हुए है जिनमे कुछ लोग बैठे हुए है ओर दूर दूर मे कुछ घर दिख रहे है जो की अँधेले की वजह से बहुत साफ साफ नहीं दिख रहा है वो एक सफेद कलर का पैंटवा अगर मे|

दीवार है दीवार मे बगवानजी की फोटो लगी हुई है जो की काफी अछि दिख रही है ।

सामने एक मेला है जिसमे बहुत सरे लोग है ओर बहुत सारे जुले लगे हुए है सामने एक दुकान है जो की आइसक्रीम की दुकान है ।